साइड में रोड क्रॉस करने के लिए ऊपर सीढ़ियां बनी हुई हैं।

ग्राहक सेवा केंद्र लिखा हुआ है।

बाहर मिट्टी की बहोत बड़ी ढेरी लगी है।

पीछे कुछ अलमीरा सी बनी है जिसमें कुछ शैंपू पड़े हैं कुछ अलग अलग सामान पड़ा हुआ--

सामने किसी की फोटो बनी हुई है पत्थर की।

और साइड में जो ग्रिल भी लगी हुई है नीले रंग की ग्रिल है।

और साइडों में बहुत सारी स्कूटीस दिख रही हैं।

कार दिख रही है खंबा दिख रहा है और छोटी मोटी बिल्डिंग भी दिख रही है।

एक बीच में सोफा लगाया है शाही सोफा दिख रहा है।

और सामने दीवार पर ए_सी लगा हुआ है।

राधा कृष्ण ने हार पहने हुए हैं।

अगरबत्ती भी जल रही है ऊपर हार से सजाया हुआ है।

सामने एस_बी_आई कार्ड भी लिखा है और एक छोटी बच्चों की जीप घूम रही खड़ी हुई है।

जिसके बीच में एक टेबल भी है। सारे सोफे जो हैं वो गोल्डन कलर के दिख रहे हैं।

बाहर एक दो तीन गमले भी रखे हुए हैं जिसमें प्लांट्स लगे हैं।

जहां पर फर्श जो हे टाइल्स पड़ी हैं सामने गमला रखा हुआ है।